दिख रहा है जिसके बाहर बहुत सारी मोटरसाइकिल खड़ी हुई हैं और एक कार --

सफेद पोस्टर लगा है ऊपर आसमान रंगीन दिख रहा है।

डला है जिस पर एक तकिया एक रिमोड और एक--

नीला सफेद बालांकाट डाला हुआ है और सामने एक टेबल है जिस पर एक--

सामने कुछ लड़के बैठे हुए हैं जो बड़े बड़े पत्थरों पर--

बैठे हैं अंदर एक पत्थरों की गुफा दिख रही है जिसमें एक महिला नोहरी हुई है जो पीले कलर की साड़ी पहने हैं और--

सामने एक दुकान दिख रहीं हैं जिसमें ऊपर काला--

अंदर एक नी पीली टेबल बनी है जिस पर एक ऊपर टिकेट प्राइस का पोस्टर लगा हुआ है अंदर दो महिला एक आदमी दिख रहा--

सामने एक बड़ा खेत दिख रहा है जिसमें नीचे हरी--

सामने एक ब्रिज बनता हुआ दिख रहा है और दो बड़ी मशीन दिख रही है जो--

वो बड़े खंभे उठाने वाली हैं एक पीली एक लाल कलर की है नीचे एक ट्रक खड़ा हुआ है।

और ब्रिज ऊपर ब्रिज बन रहा है ऊपर कुछ आदमी खड़े हुए है।

और नीचे एक लाल एक सफेद ट्रक दिख रहा है और साइड में एक खेत है।

लिखा हुआ है और एक बड़ा खंभा लगा है जिसमें झंडा लगा है जिसमें ऊपर झंडा--

सामने बहोत सारे रैक दिख रहे हैं जिनमें--

पत्थर दिख रहे है सामने इक बेड की पीठ ओ उम पीछे का रैक रखा हुआ है जो रंगीन डिजाइन का है और साइड मे एक --

ऊपर सफेद नीचे ए कथा कलर की है और कुछ कुर्सियां रखी हुई हैं।

सामने एक दुकान दिख रही है जिसमें ऊपर काला नीचे पीला--